काले रंग का कम्प्यूटर रखा है बहोत सारे फाइल्स और पेजेस रखे--

चट्टानों के ऊपर हरियाली है एक पत्थर है पत्थर के ऊपर कछुआ लिखा है।